सड़क है। इस सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती होगी। यह सड़क के किनारे बहुत ही पेड़-पौधे भी हैं। यह सड़क किनारे बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग भी है। यह बिल्डिंग में बहुत बड़े लाइट भी हैं।

ग्राउंड है। यह ग्राउंड काफी बड़ी है। इस ग्राउंड में बहुत सारे किसान भाई फसल लगाये हुए हैं।

लीची है। यह लीची को थाली में रख दिया गया है। यह लीची लाल रंग की होती है। यह लीची गाछों में फरती है।

यह मंदिर के किनारे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे है यह मंदिर के बार बहुत ही सीडिया है बहुत सारे लाइट है ।